बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं।

और यहां पे छपरा लगा हुआ है।

और इसका नाम द गोल्डन बेकरी है।

और इसका पिनकोड है बाइस साठ बाइस।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

और इस हॉस्पिटल का नाम लखनऊ हॉस्पिटल है।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारी दुकानें भी है।

वहां कुर्सियां पड़ी हुई हैं और मेज पड़ा हुआ है।

और यहां पे बिल्डिंगों में ऐ_सी भी लगी है।

और यहां पे बॉडी बनती है।

और कैमरा लगा हुआ है और लिफ्ट लगी हुई है।

और यहां पे बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं।

और यहां के इधर उधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी बने हुए हैं।

पहेने है और यह डमी है।

और यह नया कपड़ा है और यहां पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं।

क्यू_आर कोड भी लगा हुआ है और ये फोन पे का है एक और है।

माइक भी लगा हुआ है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

और यहां पे झूमर भी लगा हुआ है।

बहुत सारे दिये जल रहे हैं।

झूमर पड़े हु टंगे हुए हैं।

पेड़ भी लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

और यह ए फोर हंड्रेड रनिंग मशीन है।

ए_सी भी लगी हुई है।

और यहां पे एक कस्बा हैं।

दो तीन पानी में पत्ते भी पड़े हुए हैं।

कुछ सामान मिलते हैं जैसे कि फ्रिज कूलर टी_वी पंखा वाशिंग मशीन मिक्सर मशीन और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है।

और यहां एक लेडिस कपड़ों की दुकान है।

हां यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं स्कूटी भी खड़ी है।